और जो मशीने ऑक्सीजन वाली होती है वो अकेले लटकी हुई--

यहाँ पर प्राकृति जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान ब्लू कलर का है।

कोई भी चीज करने पर और बगल में मिठाई की दुकान है और उसका विक्रेता जो है वो खड़ा होके अपना मिठाई--

और यह शूटर जो है शूट करके अ मैडल प्राप्त करते हैं।

ओ इन लोगों ने अलग अलग कलर के कपड़े पहने हैं कोई लाल पिला इ ब्राउन ब्लैक --

और यहां एक आदमी अं उसकी दुकान के सामने जाते हुए दिख रहा--

अ आज कल मोटापा बोहोत जल्दी बढ़ जा रहा है तो उसके लिए तो सब लोग जिम जॉइन करिए ।

और यहाँ पर अलग अलग तरह की जो भी है आपको और यहाँ से जो भी जरुरत का सामान--

पानी --

और यहां पे अ पहाड़ी इलाके में अ पत्थर भी निकले हुए हैं टीले निकले हुए है जो की बहोत अच्छे लग रहे--

और भारी मात्रा में यहां पे सामान मिल रहे हैं जो आवश्यकता के अनुसार सामान है जो यू जो हम लोग यूज करते हैं डेली का।

उम्म टावर लगा हुआ है सब जने चाय पी रहे है।

रखी हुई हैं और ये लड़का जो हैं दूकान पे आया हैं।

लोटी में टंकी में अपना मुँह धो रहा है या पानी पी रहा है।

और ये फिल्ड बहोत ही अच्छा है प्रकृति दृश्य इसकी अच्छे है।

और यहा पे ढेर सारे ए_सी जो उपर छत पे रखे जाते है उसको रिपेयरिंग कर रा है।

और यहाँ पर जो है कही तो अ ए_सी रखे हुए--

और बिच में अ चोडी चोडी पाइप लगी हुई है।

वो भी निकला हुआ है यानि की बाइक का जो भी है रिपेरिंग का है यहा पे सामान रख के बन रा है।

यहाँ पे हमे एक दुकान दिख रही है जहा पे ऐ बहोत ढेर सारे पर्सन है और ये दुकान जो है खाने पीने की वस्तुएं हैं।

ये एक मॉल है यहाँ अःह हम दे--

एक परसन एंट्री कर रहा है।